इन दुकाना आप के सामने कुछ लोग भी खड़े हुए है।

और साथ ही एक घर है जो के एक आई_टी सेंटर है।

एक बस स्टॉप का है इसमें बहोत सारे बस रुके हुए हैं साथ ही कुछ लोग भी खड़े हैं बीच में एक लंबा सा खंभा है।